यहाँ पे ढेर सारे बच्चे पर रहे हैं --

यह एक नदी है। नदी के किनार वृक्ष हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।

मार्केट मे बिजली का खंभा है जिससे की बिजली कनेक्ट किया जाता है। कुछ आदमी कहीं पे जा भी रहे हैं जो भी काम होगा --

फ्रिज भी है रखने के लिए जिससे की दूध खराब न हो।

यहाँ पे बिजली का खंभा दिया गया है जिससे की ट्रेन को बिजली प्राप्त हो सके।